पोस्ट post वेरिएबल पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यहाँ मैं उसी तरह के कोड़ का उपयोग करने जा रहा हूँ जैसे कि getphp पेज के रूप में उसी तरह से जैसे कि मैंने get वेरिएबल ट्यूटोरियल में किया
यदि आपने यह पहले से नहीं देखा है तो कृपया देखिए और फिर इस ट्यूटोरियल को देखें आप इन सभी कोड़्स के बारे में जानने में सक्षम होंगे
यदि आप इन कोड़्स के बारे में पहले से ही जानते हैं तथा आपने get ट्यूटोरियल नहीं देखा तो भी हमसे जुड़ने के लिए आपका स्वागत है
मुझे पहले की तरह मेरे get के साथ मेरा पेज मिल गया है
मुझे postphp नामक एक नई फाइल मिल गई है
वास्तव में जो मैं करना चाहता हूँ वह है इसे बदलना और इसे post वेरिएबल के रूप में पोस्ट करना
साधारणतः और तार्किक रूप से मैं केवल इसके माध्यम से जाऊँगा और इसे पोस्ट में बदलूँगा
और यहाँ हम get के बदले post कहेंगे और यह काम करेगा
चलिए मैं आपको अपना post पेज दिखाता हूँ
यहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है
चलिए मैं एलेक्स टाइप करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है
इसलिए
याद रखिये यदि आप अन्य फाइल पर काम कर रहे है तो आपको एक्शन बदलने की जरूरत है
चलिए इसे रिफ्रेश करें
मैं alex एलेक्स देख सकता हूँ चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यह hello alex है
आगे हम postphp फॉंट में हैं और वहाँ कोई भी प्रश्नचिन्ह नहीं है
कुछ लिया गया है यह post वेरिएबल के अंदर संग्रहीत किया गया है
लेकिन यह दो यूज़र क्यों नहीं दिखा रहा है
यह काफी अच्छा होगा यदि हम पासवर्ड कह सकते हैं चलिए इसे पासवर्ड कहते हैं
मैं यहाँ कहूँगा thanks for your password और वापस चलते है
और अब जैसा कि आपने देखा यह पासवर्ड की जगह है
अतः मैं मेरे पासवर्ड के रूप में 123 टाइप करूँगा और मैं यहाँ क्लिक करूँगा
यह कहता है thanks for your password आपके पासवर्ड के लिए धन्यवाद
यह संग्रहीत हो गया है अतः इसका उपयोग किया जा सकता है मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ यदि मैं चाहूँ
मैं थोड़ा उसको बदल देता हूँ तो यह अधिक समझ में आता है
चलिए रिफ्रेश करें और resend
123 यहाँ क्लिक करें और यह नहीं दिख रहा है इसलिए
आपको इन चीजों की जाँच करनी होगी यह गलतियाँ करने के लिए आसान है
चलिए मैं 123 टाइप करता हूँ चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यह कहता है thanks for your password और इसने मुझे मेरा पासवर्ड दिया है
यह प्रमाणित करता है कि यह सभी ओर किया गया है और post वेरिएबल में संग्रहीत किया गया है
लेकिन यह यूज़र को नहीं दिखाया गया है जो समझ बना सकता था
क्योंकि वहाँ इनको ब्लॉक के रूप में रखने से कोई मतलब नहीं होगा वे किसी भी तरह से पठनीय नहीं हैं
और यहाँ वहाँ इसको रखने से काई मतलब नहीं है क्योंकि लोग आपके पासवर्ड को पढ़ सकते हैं
लोग आपके इंटरनेट विवरण को भी आसानी से देख सकते है
और देखें आपने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है लेकिन हो सकता है इससे लोग आपके अकाउंट का उपयोग कर सकते है
अतः आप इस पोस्ट को देख सकते हैं इनका उपयोग फंक्शन्स के लिए किया जाता है साथ ही मात्रा जो कि इसके माध्यम से भेजी जा सकती है
अतः यदि उदाहरणस्वरूप मेरा पासवर्ड वास्तव में लम्बा था मानिए कि 100 अक्षरों से अधिक यह अभी भी स्वीकार किया जाएगा
लेकिन get वेरिएबल में आपके पास सौ अक्षरों की सीमा है
अतः पोस्ट इस प्रकार उपयोगी है लेकिन यदि आप चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं जैसे कि कुछ चीजों को अलग करने की कोशिश आप get वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं
बस देखने के लिए यदि आपका डेटा उसके माध्यम से पारित हो रहा है
अतः यह मूलतः पोस्ट वेरिएबल है
आप इसका उपयोग प्रोजेक्ट्स में फॉर्म को जमा करने के लिए करेंगे अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैमैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद